मुझे इस फोटो पर एक चर्च दिखाई दे रहा हैं।

मुझे इस फोटो पर इस फूल मंडी पर क्रेटा व विक्रेटा दिखाई दे रहे है इस फूल मंडी पर बहोत ही सौंदर्य--

मुझे इस फोटो पर एक छोटा सा क्लिनिक दिखाई दे रहा है जिसमें कुछ व्यक्ति बाहर--

मुझे इस फोटो पर एक बोहोत सी बड़ी तेल मिल की दुकान दिखाई दे रही है।

इस दुकान का नाम वी_आई_पी सीट कवर सेंटर है।

ये सेटिंग के काम के आगे एक वर्कर खड़ा हुआ है जिसने हरे रंग की कोठी पेहना है।

इस गैराज का नाम आलोक ऑटोमोबाइल्स मोबाइल्स भी दिखाई दे रहा हैं।

फूलों के साथ साथ तरह तरह के जयमाला भी दिखाई दे रहे हैं इसमें एक लड़का--

इस शोरूम में कुछ टेबले लगी हुई है जिसमें कुछ लोग बैठे--

मुझे इस फोटो पर एक कांच का बड़ा सा--

मुझे इस फोटो पर एक बड़ा सा झरना दिखाई दे रहा है।

घास से भरा एक शोकेस रखा हुआ भी दिखाई दे रहा है।

इस दुकान पर एक आदमी सफेद कलर की शर्ट पहना हुआ दिखाई दे रहा है।